नाइंथ टेंथ करने के लिए और यहां बहोत यहां बहोत सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं--

बहोत सारे बिल्डिंग्स है एक कोई पेड़ पौधा भी है।

यह एक किसी स्टेडियम का फोटो है।

कुर्सी और भी अलमीरा वगैरह एक्सेटरा मतलब फर्नीचर की सारी सामान मिलती हैं।

जहां कोई फंक्शन है और वहां कई सारे लोग--

नीचे गिर रही हैं जिसे हम लोग झील बोलते हैं।

और कई सारे बेंच भी लगे हुए हैं और ये सजावट--

जहां एक स्टेज रखा गया है और कई सारी सजावट की गई है।

यह एक गांव की तस्वीर हैं जिसके पीछे एक झोपड़ी भी--